और इसमें व्हाइट कलर का एक कपड़ा ओढ़ाया गया है भगवान को जो भी मूर्ति और --

एक चट्टान जोकि बहार निकली दिखाई दे रही है।

इसमें बथलास स्टेट एंड डेवलपर्स का लोगो लगा हुआ हैं जो की घर इन्टीरीअर डिजाइनर का काम करते हैं जिसमें बी.इ.डी. लिखा हुआ है।

न्यू कार लग रही है जो की उसमे डिज़ाइन काफी अलग लग रहा है। व्हाइट कलर के शेड मे खड़ी है | बगल मे एक और फ़ोर फ़ौर व्हीलर खड़ी है।

इस मस्जिद के अंदर हा पिक्चर लग रहा है जिसमे चार शटर दिख रही हैं ए दो शटर बंद हैं दो खुले हुए हैं।

पेट्रोल पंप पे ब्लू कलर से मार्क है।

पानी के ऊपर एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है और दो काफी बड़े-बड़े पिलरस भी दिखाई दे रहें हैं।